नमस्कार क्टर्टल में क्वेस्शन ग्लूस पर स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है
इस ट्यूटोरियल में हम निम्न क्वेस्शन ग्लूस क्वेशन ग्लूस एंड नोट सीखेंगे
इस ट्यूटोरियल को रिकॉर्ड करने के लिए मैं उबंटु लिनक्स ओएस वर्ज़न 1204 और क्टर्टल वर्ज़न 081 बीटा का उपयोग कर रही हूँ
हम मानते हैं कि आपको क्टर्टल के कार्य का बुनियादी और क्टर्टल में if एल्से स्टेटमेंट का ज्ञान है
यदि नहीं तो संबंधित ट्यूटोरियल्स के लिए कृपया हमारी वेबसाइट httpspoken tutorialorg देखें
आगे बढ़ने से पहले मैं क्वेस्शन ग्लू शब्दों के बारे में समझाती हूँ
क्वेस्शन ग्लू शब्द हमें छोटे क्वेशन को एक बड़े क्वेशन में ग्लू करने के लिए सक्षम बनाते हैं
एंड ओर और नोट कुछ ग्लू शब्द हैं
ग्लू शब्द if एल्से कंडिशन के साथ एक साथ उपयोगी होते हैं
अब नया क्टर्टल एप्लिकेशन खोलते हैं
दश होम पर क्लिक करें
सर्च बार में क्टर्टल टाइप करें
और आप्शन पर क्लिक करें
अब ग्लू शब्द एंड के साथ ट्यूटोरियल शुरू करते हैं
मेरे पास टेक्स्ट एडिटर में प्रोग्राम पहले से ही है
मैं टेक्स्ट एडिटर से कोड कॉपी करके क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करती हूँ
कृपया यहाँ ट्यूटोरियल रोकें और अपने क्टर्टल एडिटर में प्रोग्राम टाइप करें
प्रोग्राम टाइप करने के बाद ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें
मैं प्रोग्राम टेक्स्ट को जूम करती हूँ
यह थोड़ा धुंधला हो सकता है
कोड को देखें
रिसेट कमांड टर्टल को डिफॉल्ट पोजिशन में सेट करती है
कीवर्ड मेसेज के बाद प्रोग्राम में मैसेज दोहरे उद्धरण चिन्हों में दिया गया है
मेसेज कमांड स्ट्रिंग को इनपुट के रूप में लेती है
यह स्ट्रिंग से टेक्स्ट सम्मिलित करते हुए एक पॉप अप डायलॉग बॉक्स प्रदर्शित करता है
और नोन नुल स्ट्रिंग्स के लिए एक बीप करता है
a b और c वेरिएबल्स हैं जो यूजर इनपुट संचित करते हैं
एएसके कमांड वेरिएबल्स में संचित होने वाले यूजर इनपुट के लिए प्रोम्ट करती है
ifabसी और bcआ और caब इफ कंडिशन को चेक करता है
जब दो ग्लूड क्वेशन एंड के साथ ट्रू होते हैंतो परिणाम ट्रू होता है
ifaब और ब सी और सी आ इफ कंडिशन को चेक करता है
जब इफ कंडिशन ट्रू से ऊपर होती है कंट्रोल नेस्टेड इफ ब्लॉक में स्थानांतरित होता है
यह चेक करता है कि यदि त्रिकोण के भाग असमान हैं
फोंटसाइज 18 प्रिंट कमांड द्वारा उपयोगित फॉन्ट साइज को सेट करता है
गो 10100 टर्टल को कैनवास के बाएँ से 10 पिक्सेल्स और कैनवास के ऊपरी ओर से 100 पिक्सेल्स स्थानांतरित होने के लिए नियंत्रित करता है
प्रिंट कमांड इफ कंडिशन की चेकिंग के बाद स्ट्रिंग दर्शाती है
एल्से कमांड एल्से कंडिशन को चेक करती है जब इफ कंडिशन ब्लॉक में फलसे हो
प्रिंट कमांड एल्से कंडिशन की चेकिंग के बाद स्ट्रिंग दर्शाती है
एल्से कमांड आखिरी कंडिशन को चेक करती है
यहाँ एल्से चेक होती है जब उपर्युक्त कंडिशन्स फलसे होती हैं
प्रिंट कमांड एल्से कंडिशन की चेकिंग के बाद स्ट्रिंग दर्शाती है
मैं सभी कंडिशन्स को चेक करने के लिए कोड रन करूँगी
प्रोग्राम रन करने के लिए रुन बटन पर क्लिक करें
एक मैसेज डायलॉग बाक्स पॉप अप होता है
अब ओक पर क्लिक करें
एबी की लंबाई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
बीसी की लंबाई के लिए 8 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
एसी की लंबाई के लिए 9 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
आ स्केलीन ट्रायंगल कैनवास पर प्रदर्शित होता है
फिर से रन करें
एक मैसेज डायलॉग बॉक्स पॉप्स अप होता है
ओक पर क्लिक करें
अब एबी की लंबाई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें बीसी की लंबाई के लिए 6 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें एसी की लंबाई के लिए 6 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
नोट आ स्केलीन ट्रायंगल कैनवास पर प्रदर्शित होता है
डिफॉल्ट कंडिशन को चेक करने के लिए फिर से रन करें
एक मैसेज डायलॉग बॉक्स पॉप अप होता है
ओक पर क्लिक करें
अब एबी की लंबाई के लिए 1 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
बीसी की लंबाई के लिए 1 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
एसी की लंबाई के लिए 2 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
डोएस नोट सैटिस्फाई ट्रायंगल्स इनेक्वालिटी कैनवास पर प्रदर्शित होता है
अब इस प्रोग्राम को हटा दें
मैं क्लीयर कमांड टाइप करती हूँ और कैनवास को साफ करने के लिए क्लीयर कमांड रन करती हूँ
आगे नोट कंडिशन के साथ कार्य करें
मैं टेक्स्ट एडिटर से प्रोग्राम कॉपी करती हूँ और इसे क्टर्टल एडिटर में पेस्ट करती हूँ
कृपया यहाँ ट्यूटोरियल रोकें और अपने क्टर्टल एडिटर में प्रोग्राम टाइप करें
प्रोग्राम टाइप करने के बाद ट्यूटोरियल पुनः आरंभ करें
मैं प्रोग्राम टेक्स्ट को जूम करती हूँ और प्रोग्राम समझाती हूँ
रिसेट कमांड टर्टल को डिफॉल्ट पोजिशन में सेट करती है
a b और c वेरिएबल्स हैं जो यूजर इनपुट को संचित करते हैं
इफ नोट aब और bसी और cआ इफ नोट कंडिशन को चेक करता है
नोट एक विशिष्ट क्वेशन ग्लू शब्द है
यह इसके ओपरेंड के लॉजिकल स्टेट को उल्टा करता है
उदाहरणस्वरूप यदि दी गई कंडिशन ट्रू है नोट फलसे बनाता है
और जब कंडिशन फलसे होती है आउटपुट ट्रू होगा
प्रिंट कमांड इफ नोट कंडिशन की चेकिंग के बाद स्ट्रिंग प्रदर्शित करती है
एल्से कमांड निष्पादित होती है जब इफ कंडिशन फलसे होती है
प्रिंट कमांड एल्से कंडिशन की चेकिंग के बाद स्ट्रिंग प्रदर्शित करती है
गो 100100 टर्टल को कैनवास के बाएँ से 100 पिक्सेल्स और कैनवास के ऊपरी ओर से 100 पिक्सेल्स स्थानांतरित करता है
रिपीट 3turnright 120 फॉरवर्ड 100 कैनवास पर एक समभुज त्रिकोण बनाने के लिए टर्टल को अनुमति देता है
सभी कंडिशन्स को चेक करने के लिए मैं प्रोग्राम रन करती हूँ
कोड को रन करने के लिए फ़5 की दबाएँ
एबी की लंबाई के लिए 6 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
बीसी की लंबाई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
एसी की लंबाई के लिए 7 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
ट्रायंगल इस नोट इक्विलेटरल कैनवास पर प्रदर्शित होता है
फिर से रन करें
एबी की लंबाई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
बीसी की लंबाई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
एसी की लंबाई के लिए 5 प्रविष्ट करें और ओक पर क्लिक करें
ट्रायंगल इस इक्विलेटरल कैनवास पर प्रदर्शित होता है
एक समभुज त्रिकोण कैनवास पर बन गया है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
संक्षेप में इस ट्यूटोरियल में हमने क्वेशन ग्लूज़ एंड नोट के बारे में सीखा
एक नियत कार्य के रूप में मैं चाहती हूँ कि निर्धारित करने के लिए प्रोग्राम लिखें क्वेशन ग्लू ओर का उपयोग करके समकोण त्रिभुज के लिए कोण अवधारणा इफ ओर कंडिशन की संरचना इफ विथिन ब्रैकेट्स कंडीशन ओर विथिन ब्रैकेट्स कंडीशन ओर विथिन ब्रैकेट्स कंडीशन
विथिन कर्ली ब्रैकेट्स डीओ सोमथिंग
एल्से विथिन कर्ली ब्रैकेट्स डीओ सोमथिंग
इस लिंक पर उपलब्ध विडियो देखें httpspoken tutorialorgWhat इस आ स्पोकेन ट्यूटोरियल
यह स्पोकन ट्यटोरियल प्रोजेक्ट को सारांशित करता है
यदि आपके पास अच्छी बैंडविड्थ नहीं है तो आप इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं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
जो ऑनलाइन टेस्ट पास करते हैं उन्हें प्रमाण पत्र भी देते हैं